पेड़ पौधे एवं नीम के पेड़ है।

और वहां पर बहुत सारी भीड़--

एक फल फ्रूट की दुकान है।

मैं यहां देख रहा हूं कि यह एक--